यह वॉच घड़ी के नाम से जाना जाता है यह चित्र बहुत खूबसूरत है ।

ये जो आप देख रहे हैं यह जिम है जहाँ पर सभी प्रकार की समान रखे गए हैं जिम वर्क जो सभी शहर में होते हैं जहाँ पर सभी --